यख पिछाड़ी पार्द कर छन लग्यां यख मा जी कुछ जंगलु कर छ बणायु।

राखी बहन रक्षाबंधन का दिन अपड़ा भाई तें पहनोंदी छा यख मा जी एक आदमी भी छ।